यह एक पॉलिथीन बैग में बहुत सारी मछलियां रखी गई है जैसे कि मै खुद देखने में लग रहा है कि इसने स्नैल टाइप में कुछ है।

इससे छोटी-मोटी कोई गली वगैरा या रोड होगी जहां पर साइकिल खड़ी है और पीछे बहुत सारे लोग दो-दो तीन-तीन के कपल्स टाइप में बैठे हैं ग्रुप में बैठे है।

ये देखने में एकदम ताजा और पौस्टिक लग रहे है इस ठेले के ऊपर।

सब बहुत ही फिटनेस की और जा रहे हैं सब लोग एक ही पोजीशन में जैसे नी कोई कोई ट्रेंड कर रहा है या कोई रेगुलर करने वाले उस तरह से यह योगा कर रहे हैं।

और उधर एक बच्चे का हेअर कट चल रहा है पीछे कुछ लोग वेटिंग में बैठे है ताकि ये फ्री हो तो वो भी अपना हेअरकट करा सके।